यह गार्डन है उ गार्डन के ऊपर फ्रेंड्स ---

यह एक बैंक है दो चार लेडीज बैंक में दिख रही--

और एक खंबा दिख रहा है साइड में बस --

ऊ बहुत ऊंचा है एक ब्लू कलर का शटर --

सजावट हुई है दो सोफे रखे है और ऊपर --